खेत के अंदर बहुत सारे घास फूस है।

इसके साइड में एक बड़ा सा पोस्टर जैसा कुछ है उसके ऊपर लिखा हुआ है सुग्गा बांध वॉटरफॉल --

सोफा भी वाइट कलर का है और उसके आसपास में चार कुर्सियां भी लगाए गए हैं।

फोटो में दिख रहा है कि एक बड़ा सा मंदिर है।

पास में एक गीजर रखा हुआ है गर्म करने वाला --

घर के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है।

आस पास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उसके अंदर पार्क बनाया गया हैं।

साइकिल एक दम नया है और यहां पे साइकिल में डिस्क ब्रेक भी लगाया गया है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक शोरूम है जिस शोरूम का नया नया ओपनिंग हुआ है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक लड़का है वह फोटो में देख रहा है।